और हम देख सकते है की यहाँ पे एक जमीन है ब्राउन कलर की जिस पे कुछ मट्टी मट्टी सी पड़ी हुई है और पीछे की तरफ भी हम देख सकते है पीछे की तरफ कुछ जमीन है और ऊपर की तरफ खुला आसमान है जिसकी रिफ्लेक्शन पूरे पानी की अंदर आ रही है।

करे तो यहा पे हम देख सकते है और यहा पे एक ब्रिज है जो की अ किसी गाड़ी वगैरे के लिए ही बनाया गया है वो ब्रिज और वहा से गड़िया वगैरा चलती है।

और उसके ठीक नीचे हम देख सकते है की गोल गोल से पिलर लगे हुए है और जो की पानी मे दुबे हुए है और वहा से नदी मे से पानी बेहता हुआ हमे नजर आ रहा है उसकी एक एक लेहर हमे दिख रही है उपेर की।

में हम देख सकते है कि ऊपर खुला आसमान नजर आ रहा है जहा पे बीच बीच मे कुछ बादल है नीचे की तरफ हमे एक पुल नजर आ रहा है गाड़ियों के चलने के लिए और साइड मे हम देख पा रहे है की पूरा एक जहा पे

बात करे तो यहाँ हम देख सकते है कि यहाँ नीचे की तर एक अ रोड देखाई दे रहा है ब्लैक कलर का जहाँ पे हमे कुछ गाड़िया चलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से मतलब रात का समय होने की वजह से

हमे डबल विंडोज़ नजर आ रही है एक विंडोज़ सिटर के लिए होती है और जो दूसरी विंडोज़ है वो स्लीपर्स के लिए होती है और हम देख पा रहे है काफी स्टाइलिश सी वो बस है और काफी

और कुछ हम वहां पे येल्लो-येल्लो अ शेड देख सकते है नीचे की जो जमीन है वो जमीन थोड़ी मिट्टी वाली जमीन है ऊपर हम अ खुला आसमान

हम बात करे तो यहा पे हम दिख सकते है की सामने हमे एक डैम के जैसा कुछ देखने को मिल रहा है जो की शायद वो डैम ही है और उसमे से बहुत स्पीडली